एक विंडो दिखाई दे रही है कुछ लाइट दिखाई दे रही है।

एक पार्लर दिखाई दे रहा है पार्लर मे मिरर दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है चेयर दिखाई दे रहा है टेबल पे एक फोन दिखाई दे रहा है।